अपना प्रेस्टिक कर रहे हैं यहां पे हरा भरा पेड़ है ये बहुत बड़ा--

यह एक सुपर मार्केट का तस्वीर है जहां पर ग्रोसरी का--

यह तस्वीर किसी बजार मार्केट का है।

जहां पे फूड ट्रैक नामक एक दुकान है यहां पे कुछ महिलाएं पुरुष शॉपिंग कर रहे हैं ई रिक्शा खड़ा हुआ है।

और लोग शॉपिंग कर रहें--

जिसमें एक टी_वी बहुत बड़ा सा लगा हुआ है।

यह बस स्टैंड का तस्वीर है।

बहुत सुंदर सुंदर कप का तस्वीर यहां पे खींचा गया हैं।

मोर का पंख लगा हुआ है।

और यह घर पीला और लाल कलर से पेंट हुआ है।

यह किसी मार्केट का तस्वीर है जहां पे आंध्रा बैंक का एटीएम लगा हुआ है।

यह दुकान किसी रोड के किनारे का दुकान का तस्वीर है।

कुछ शीशा कुछ लाइट भी लगा हुआ है।

यह तसबीर बहुत बड़ा मकान का तस्वीर है।